ये पिक्चर एक बारिश की पिक्चर है यहां पर बारिश का पानी बहोत ज्यादा खड़ा हैं।

ये फास्ट फूड रीजनेबल प्राइस पर मिलता है।

टेंट का रंग बहोत ही सुंदर लग रहा है।

ये फोटो एक गेराज की फोटो लग रही है।

साइड पर सड़क जा रही है और वहां पर काफी व्हीकल और भी खड़े हैं।

ये शॉप एक डेंटल क्लिनिक हैं यहां पर दातों का ट्रीटमेंट किया जाता हैं।

और कुछ लोग भी आते जाते नजर आ रहे हैं एक बड़ा सा नीम का पेड़ है।

गुब्बारे भीं लगे हैं मानो के किसी का घर लग रहा हैं।

वृक्ष का कलर हरा भरा है।

येशु मसीह जी के पैरो का एक जॉइंट पिक्चर खिंचवा रहे हैं।

यह मूर्ति सफेद रंग की है इनके गले में फूलों की माला डाली हुई है।

जो की खेतों के आस पास बना हुआ है।

ये पिक्चर बहुत ही सुंदर पिक्चर है।

मानो जैसे किसी महल की पिक्चर हो।

चेयर और टेबल्स पर पेंट बहोत सुन्दर किया हुआ है।

ये एक स्कूल का आंगन है।